यहाँ लाइट भी दिखाई दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

वहाँ पर एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकाी दीवार का कलर व्हाइट और रेड है वहाँ पर एक बच्ची बैठी दिखाई दे रही है जिसने ब्लैक कलर के कपड़ा पहन रखी है वहाँ पर एक चैर भी दिखाई दे रहे है जिसका कलर ब्लैक है।